सामने एक पार्क नज़र आ रहा हैं उस पार्क में कुछ लोहे का एक झूला सा बना हुआ है

कुछ एक हाथ नीचे की ओर है एक हाथ ऊपर की ओर है। तीनों का एक साथ है --

सामने एक मकान नज़र आ रहा है और मकान में काफी सारे खंभे लगे हुए हैं कुछ बीच में हैं।

सामने एक कोई मकान सा दिख रहा है टीन का बना हुआ है और रोड़ गई है और कुछ उसमें लाइट भी जल रही है।

सामने एक बड़ा सा कोई शोरूम है उसके नीचे कुछ दुकान सी ठेली भी लगी हुई है और कुछ बन्दे खड़े हुए है।

सामने ट्रेन एक जा रही है एक आ रही है औ और एक टंकी भी दिखाई दे रही है।

सामने एक तालाब सा नजर आ रहा है उसमें पानी भर हुआ है उस पे कुछ काई सी लग रही है और एक कोई लोहे का एक पुल सा पटा हुआ है।

उस पे एक बोर्ड टंगा हुआ है और खूब बड़ी-बड़ी दो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में।